सीट वाला मकान है एक तरफ लकड़ी का दरवाजा है बिजली का बोर्ड लगा है।

शीट वाले मकान है लोहे का गेट है डडी है रेड कलर का बोर्ड लगा हुआ है पिल्लर जमीन मे पड़े हुए है पेड़ है।

घर है फूलों की मालाएं लगी हुई है कांच की खिड़कियाँ है रास्ता है।

झाड़ है स्टील के पाइप है बाइक खड़ी हुई है।

शड्डी है एक दरवाजा है लोहे का लोहे की खिड़की है डाकघर का बाहर टंगा है बोर्ड बड़ा सा ऊपर में ले रखा है।

खिड़की है बड़ा सा व्हाइट कलर का बोर्ड है पेड़ हैं लोहे का खंबा है।